जहां पर बहोत सारे पेड़ पौधे हरे हरे--

ऊपर बहोत सारे लोग खडे है।

और बहुत सारे लोग उसे देखने आए हुए हैं।

फिफ्टी परसेंट लिखा हुआ है।

कुछ गिटार पीले और नीले कलर का रखा हुआ है।

टेंट के नीचे एक टंकी भी रखी हुई है।

शादी के लिए डेकोरेशन हुआ है।

यह एक बहोत सुंदर पेट्रोल पंप है।

फोटो शूट कर रहे हैं तीन लोग खड़े हुए हैं।

बाहर एक रेड कलर कि--

यह एक बहोत सुंदर सा--

आयुर्वेदिक के सामान यहां पर मिलते हैं।